और जो फ्रंट गेट है वो पुरा येलो कलर का लोहे का बड़ा गेट है जिसमें अंदर की तरफ एक बाइक खड़ी है और पीछे की तरफ कुछ लो--

और कहीं पर बड़े बड़े पौधे भी लगे हैं यह व्यू बहोत ही सुंदर लग रहा है।